मछली भी रहते हैं जैसे मछवारे लोग पकड़ने के लिए जाते --

यह एक मस्जिद है यहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग जाते है मस्जिद में मस्जिद मे नमाज अदा किया जाता है जुम्मा पड़ा जाता है।

जुम्मा पढ़ा जाता है यहां पे शुक्रवार को बहोत भीड़ होती है।

यह पार्किंग में दो टाइम पार्क किया जाता है एक सुबह एक शाम --

वह चर्च मे ईसु मसीह का --

यहाँ पे कुछ पोग्राम हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुये हैं और यहाँ पे बहोत सारे --

छोटी-छोटी बच्चे भी आये हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आये हुए हैं ।